बहुत लंबा सा कोई होटल है या तो कोई कॉलेज है जिसमें बहुत लंबा कॉरिडोर है।

इस दृश्य में एक भारत पेट्रोलियम का--

और मुझे लग रहा है कि उसका ड्राइवर वो तेल खाली होने का वेट कर रहा है और फोन भी चला रहा--

बट अंदर कुछ तो इसमें मिलता है कुछ खाने का आइटम ही मिल रहा है बाहर एक अंकल अपनी बाइक के पास--

मैप बना हुआ है और भी--

और इसके पीछे कुछ सूचनाएं लिखी हुई हैं हरे--

तकिया वगैरा पर्दे वगैरे भी लगे हुए हैं इसमें एक ए_सी भी लगा हुआ है उसके बगल में भी एक बेड रखा --

जोकि लेफ्ट साइड में चार बाल्टियां--

जहां पर काम लगा हुआ है और तीन लोग काम कर रहे हैं यहां पर एक सीढ़ी भी दिखाई दे रही है।

सर्विस में लगी हुई गाड़िया भी दिखाई दे रही है जैसे की--

पुल का नजारा दिखाई दे रहा है जहां पर--

यह मुझे कहीं की बालकनी दिखाई दे रही हैं।

स्टेशन का दृश्य दिखाई पड़ रहा है।

किसी झरने का दिखाई पड़ रहा है जहां पर पीछे कुछ लड़के नहा रहे हैं।

दो लड़कियां इधर नीचे नहा रही हैं एक लड़की उनका फोटो ले रही है पीछे से--

और एक मोटरसाइकल चलाते हुए अंकल जा रहे हैं जिन्होंने अपने सर पर हाथ रखा हुआ है।